पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है और एक ट्रांसफार्मर भी है।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

पार्क के साइड साइड में दीवार दिया हुआ है।

पार्क में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ये एक लड़कों का कपड़ों का दुकान है दुकान में एक वाइट कलर का शर्ट टंगा हुआ है।

और अलमीरा में पाँच तो हरा कलर का शर्ट टंगा है और बहुत सारा कपड़ा रेत पे लगा हुआ--

में शर्ट वाइट कलर का पहन के बैठा है।

रोड के किनारे-किनारे पेड़ लगा हुआ है रोड के पीछे एक दीवार है दीवार लाल कलर का--

पार्क के साइड में बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं।

पार्क के बगल में रेलिंग दिया हुआ है।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

रूम में दो खिड़कियाँ भी दिख रही है।

और यहाँ पे साइड में रेक भी बना है।

यह एकएक हॉल है हॉल में बहुत सारा टेबल लगा हुआ है और बहुत सारा कुर्सिया भी लगी है ।

यहाँ पर शादी के लिए जयमाला हो रहा है दूल्हा और दूल्हन खड़े हैं यहाँ पे--

और पीछे चित्र भी दिखाई दे रहा है एक लड़की खड़ी है हाथ में फूल ली है।

पार्क का दरवाज़ा पीछे काला कलर का दिखाई दे रहा है और बीच में एक स्टैचू है और बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं।

ये एक कॉफी स्टॉल है यहाँ पे एक आदमी कॉफी बेच रहा है।

तीन चार बोतल रखा हुआ है एक गिलास भी रखा हुआ है ।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं।

और बहुत सारे टेबल पर ग्लास और टिशू पेपर रखा हुआ है।

और फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ है।

और डब्बा के बगल में दो आइसक्रीम का ही डब्बा है।

ऊपर साइड में बिजली का एक तार भी लगा है।

ट्रेन में चक्के लगे हुए हैं और पीछे कुछ हरियालियाँ --

दिखाई दे रही है आगे में एक छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर बादल छाया हुआ है बादल पर छोटे-छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नदी है नदी में ढेर सारा नाँव चल रहा है।

नदी के किनारे में ढेर सारा बिल्डिंग है।

एक पतला सा रोड है रोड पर ढेर सारा आदमी लोग चल रहे हैं।

एक नाँव है जिसका कलर ब्लू कलर है।

दो आदमी खड़ा है दोनों आदमी वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ--

सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है उसमें लाइटिंग भी लगा हुआ है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस के बाहर ढेर सारा गाड़ियाँ लगी हुई है।

औरअंदर में एक लाल कलर का दरवाजा है।

एक अ रेस्टोरेंट में एक डोअर मैट है।

एक आदमी तार पकड़ा हुआ हैनीचे दरवाजा दिखाई दे रहा है और एक खिड़की भी है।

फूल के बगल में नदी है नदी में पानी बह रहा है।

पीछे हरा भरा पेड़-पौधा है।

मेला है मेले में रोड है रोड के किनारे ढेर सारे झूले लगे हुए हैं।

बहुत से लोग आते-जाते दिखाई दे रहे हैं पीछे पेड़ है पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं।

एक दुकान है दुकान का नाम सगुन कलेक्शन है।

एक पार्क है पार्क में बहुत से लोग टहल रहे हैं।

एक जिम क्लास है जिम क्लास में एक लड़का अपना मोबाइल खोला हुआ है।

और पीछे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं एक फैन लगा हुआ है।

एक टेबल फैन लगा हुआ है।

कुछ बच्चे डांस सीख रहे हैं।

जिम क्लास है जिम क्लास में जिम करने वाला मशीन लगा हुआ है कुछ रोलर रखा हुआ है।

ऊपर का डिज़ाइन वर्क किया हुआ है।

खिड़कियाँ हैं छोटे-छोटे सजाए हुए पिक्चर है।

खिड़की के बगल में लाइट लगे हुए हैं।